बड़ा-सा मंदिर हैं और साइड में काउंटक में है जहाँ पे बाइक खड़ा किया गया है और साइड में पंडाल भी बना हुआ है और कुछ व्यक्ति हैं जो बैठे हुए है मंदिर के पास और कुछ व्यक्ति हैं जो जा रहे है गेट के बाहर में और काफी बड़ा ग्राउंड भी है और गेट काफी बड़ा लग रहा है दिखने में।